आ अन्दर में कुछ लोग हैं सीसे का गेट है अन्दर में कुछ लोग हैं जो कपड़े खरीद रहे हैं साड़ियां खरीद रहे हैं।

और आपको यहां पे लिखा हुआ है फैंसी आकर्षक रेडीमेड वस्त्रों के--

प्लेट में रखा गया है खाने के लिए आदमी को नजर नहीं आ रहा है खाने के लिए।

बहोत सारे दाले रखी हुई है चम्मच भी है कटोरी में ए सब्जी है।

और एक रास्ता है उसके बगल में बहोत सारे पेड़े लगी हुई है।

वहां और अह रास्ता बहुत अह कन्जेस्टेड है गड्ढे हैं रास्ते में--

ये आदमी कुछ सोच रहा है और नदी को देखा जाए--

काफी संख्या में यहां पे कोल्ड ड्रिंक्स मिल रही है एक आदमी काउंटर पे बैठा हुआ है किताबें बहुत सारी हैं।